गेट के दो खंभे पर दो लाइटें लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक पुराने जमाने की दीवाल दिखाई गई है।

पीछे एक नदी दिखाई दे रही है।

अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं।

सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग्स बनी हुई हैं।

एक कार का आगे का हिस्सा खुला हुआ दिखाई दे रहा है।